सामने एक पानी डालने वाला पाइप भी रखा हुआ है।

मुझे इस पिक्चर में एक जुंबा क्लास दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में एक अमूल शॉप दिख रही है।

बाहर एक लड़का सेल्फी ले रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक कपड़ों की शॉप दिख रही है।

मुझे इस पिक्चर में एक लड़का दिखाई दे रहा हैं।

वह पेट्रोल पंप काफी दूर से नजर आ रहा है।

उसके पीछे कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े हुए हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक रूम दिख रहा है।

वह रूम किसी होटल का लग रहा है।

उसे रूम में एक बेड रखा हुआ है।

शायद वहां नमाज पढ़ रहे हैं।

सामने एक बिल्डिंग भी बनी हुई है।

मुझे इस पिक्चर में एक खिलौनों की दुकान दिख रही है।

उस दुकान में काफी सारे खिलौने दिख रहे हैं।

उसे रेस्टोराॅन के बाहर कुछ टेबल और चेयर रखी हुईं हैं।

पानी ज्यादा गहरा नहीं लग रहा है।

सारे टीचर्स ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई है।

उस तालाब के आसपास काफी सारे लोग भी दिख रहे हैं।

और काफी तेज धूप भी पड़ रही हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक बस स्टैंड दिख रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक ज्वेलरी का शोरूम दिख रहा है।

उस शोरूम में काफी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक मशीन दिख रही है।

मुझे इस पिक्चर में एक हॉस्पिटल दिख रहा है।

वहां हॉस्पिटल काफी बड़ा लग रहा है।